एक फोन व्हीलर दिखाया जा रहा है जिसमें दोनों के गेट वेट खोले गए हैं खोल करके रख दिए गए हैं आगे वाले भी पीछे वाले भी--

और उस पर बहुत सारे लड़के उड़के लड़कियां उड़कियां बैठी हुई है और सभी को कान में हाथ देकर के वह एक आदमी है जो--

बहोत सारे बाइक रखे गए रॉयल इनफिट के और वो सभी कोई ब्लू में कोई येलो में कोई रेड में है कोई ब्लैक में है।

है एप्पल्स है केले को लटका कर के रखा गया मौसममी है।

और कुछ अनार उनार है सभी को सजा करके रखा गया एक वजन करने के लिए मशीन है और कुछ छोटा सा दुकान--

एक पार्क टाइप का दिखाया जा रहा है जिसमें रोड है रोड के बीच-बीच में बहुत बड़े-बड़े से पेड़ वेड़ है बहुत सारे लेडीज सूडीज चेंज है एक--

बहुत सारे होटल वटल दिखाए जा रहे हैं और एक--

रोड दिखाया जा रहा है रोड में बहुत सारे फोर व्हीलर खड़े हैं जो की रेड में ग्रे में है व्हाईट्स में है।

बात-वात कर रहे हैं कुछ बाइक वाइक खड़े हैं बड़े-बड़े से पेड़-वेड़ दिखाए जा रहे हैं एक छोटा सा फल का शॉप दिखाया गया है जिसमें कुछ फलवल रखे गए हैं।

एक ग्राउंड टाइप का दिखाया जा रहा है जिसमें एक बहुत बड़ा सा पेड़ है एक झंडा है।

एक कैमरा स्टैंड रखा गया जिस पर कैमरा है घड़ी है नीचे फर्स पर मार्बल है बहुत सारे आदमी है बैठे हुए--

समानवमान है एक वाइट कलर की स्कूटी पर एक लेडीज बैठी हुई है बाहर पर एक बाल्टी टाइप का एक रोड है रोड पर भी काफी सारे पेड़ वेड़ --

चेयर्स है एक लड़का है जो चेयर्स पर बैठ के--

वो ब्लू कलर का बैग लिए हुए एक और लड़का है जो हाथ में कुछ सामान लिए हुए येलो कलर का बैग लिया हुआ चाह रहा--

बहुत बड़े-बड़े से पेड़ दिखाया जा रहा है ग्राउंड टाइप का दिखाया जा रहा है।

एक रोड दिखाए जा रहे बहुत सारे वाइट कलर के बोरे वोरे जिनमें सामान अनुमान भर करके रखा गया कुछ न्यूज़ पेपर को जो एक साथ करके बाहर पर रखा गया है।

दीवालों पर भी कुछ मार्बल लगा दिए गए खिड़कियां हैं खिड़कियों पर कांच वाच--